और गार्डन में चारों ही तरफ हरियाली-हरियाली--

खुर्चियाँ डाली हुई है और दीवार पर फूलों की ड्राइंग बनी रखी है।

इस बीकर पर एक फैन लगा हुआ है और ए--

और एक ऐसी भी लगी हुई है और बहुत सारे पर्पल लाइट भी--

यह एक अ शासकीय पॉलि अ टेक्निक कबीरधाम अ दिखाई दे रहा है और अम्म --

एक रोड़ दिखाई दे रहा है रोड के आजू-बाजू में बहुत सारे नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे और पीठ के नम नीचे --

और होटल के बाहर एक कचरा डालने के लिए --

बहुत सारी सीढ़िया भी दिखाई दे रही है सीढ़ियों पर एक लाल--

दिखाई दे रहा है और माइक भी है और यहाँ कीर्तन चल रहा है।

और दुकान के भीतर पर कुछ मीटर भी दिखाई दे रहै है हर एक अम्म --

यह लड़की लड़कियाँ प्रणाम कर रही है और दो आदमी वहाँ--

मकान भी अ दिखाई दे रहै ओर आजू -बाजू में बहुत सारे पौधे-पेड़ अ बड़े -बड़े लगे हुए है।

और यहाँ प्राणायाम अअअ चल रहा है।

और रिक्से के पास अअअ अअअ बोर्ड अअअ लगा हुआ है और --

मछली लेने के लिए आई हुई हैऔर आजु बाजु मे भी बहुत सारी दुकाने दिख रही है।

और अ टोमेटो सॉस की भी --

यह लगी हुई दिखाई दे रही है।

के खेलने के लिए यह दिखाई गई है और अम --

दिख रहै है और अ खूर्चीयाँ भी अ दिख रही हैं।

पास बहुत सारी पेड़ लगे हुए हैं और --

बहोत सारी पोस्टर भी लगे हुए है।

सोफा और गुझिया दिखाई दे रही हैं।

अ के बाहर एक लड़का -लड़की हाथ अ में हाथ लेकर --